यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक कलर का कोट सूट पहन रखा है।

यहां पर एक रोड एरिया है यहां पर कुछ बस जा रही है।

यहां पर एक नाव जा रही है जिसमें एक लड़की बैठी है जिसने।

यहां पर टमाटर रखे हुए हैं हरी मिर्चे रखी हुई है।

यहां पर एक रोड एरिया है जहां पर काफी सारी गाड़ियां और बाइकें जा रही हैं।

पीछे एक स्कूल का बच्चा बैठा है जिसने पीछे बैक टांग रखा है।

यहां पर एक लाइब्रेरी है यहां पर कुछ टेबल और चेयर डाले हुए हैं।

यहां पर ग्रोसरी शॉप है यहां पर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर कॉमप्लन रखे हुए हैं।

यहां पर एक रिक्शा खड़ा हुआ है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है।

इसने वाइट कलर की हुडी पहन रखी है ब्लैक कलर का लोवर पहन रखा है।

अ एक फैन लगा हुआ है यहां पर बर्थडे कैप रखे हुए हैं।

यहां पर एक योगा क्लास चल रही है यहां पर काफी सारे लोग योगा कर रहे हैं यहां पर।

यहां पर एक ब्लैकबोर्ड लगा है एक व्हाइटबोर्ड लगा हुआ है यहां पर एक विंडो है।

यहां पर एक नर्सरी है जहाँ पर काफी सारे गमलो में पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक पार्क है जिसमें कुछ झूले लगे हुए हैं।

यहां पर वाइट कलर की बेड शीट बिछी है रेड कलर का ब्लेंकेट रखा है बेड पर एक।

यहां पर रोड पर एक ब्लैक कलर की कार जा रही है एक ऑटो जा रही है।

यहां पर काफी सारी लाइट चल रही है यहां पर--

ने लाइट पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है एक बैग टांग रखा है।